सड़क बनाया गया है देख सकते है बहुत ही अच्छे ढंग से इसको लगा के बनाया गया है ताकि उखड़े न सड़क ख़राब न हो।

की अच्छा मंदिर है जो की बहोत ही बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया है इसको बनाने में काफी पत्थरों का उपयोग किया गया है।

यहां पे दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आते है पूजा पाठ करते है भगवान के दर्शन करते हैं क्यूंकि देख सकते है की बहुत ही अच्छा है।

और बहुत ही शानदार लग रहा है यहाँ का सजावट हीं बहुत हीं बढ़िया सजाया गया है इसको आदमियों में उत्साह लग रहा है घूम रहें हैं बहुत ही खुश मन से घूम रहें हैं खड़े होके कुछ देख रहें हैं कुछ इधर भी बाजा बजा रहें हैं सब।

यहाँ पे एक अजीब सी रौशनी आ रही है। रौशनी कहाँ से आ रही है। लाइटे लगाई गई हैं या नहीं ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये छोटे-छोटे हरे-भरे पेड़-पौधे और एक पहाड़ ही लग रहा है। बोहत ही अच्छा लग रहा है। बोहत शानदार यहां की हरियाली बोहोत अच्छी है।